इस दृश्य में हमें एक पार्क नजर आ रहा है।

यह दृश्य हमें किसी खिलौनों की दुकान का--

हमें बहोत सारे पौधे और वृक्ष भी उगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस दृश्य में हमें एक बड़ी शॉप नजर आ रही है।

इंस्ट्रूमेंट्स जैसे की गिटार वोयलेन पड़ी हुईं नजर आ रही हैं।

यह दृश्य हमें किसी सैलून का दिखाया जा रहा है।

चार शेक की बोतले पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

उन्होंने नीचे गद्दे और उसके ऊपर एक सफेद रंग की चादर भी बिछाई हुई है।

इस दृश्य में हमें कंस्ट्रक्शन वर्क चलता हुआ दिखाई दे रहा है।